एक छोटा सा फंकशन यहाँ लग रहा है जहाँ पर बहोत सारे कुर्सिया रखे गए हैं टेबल रखे गए है और परेशान भी दिख रहे हैं।

और दो एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है टेबल पर एक और एक आदमी सामने खड़ा हुआ है।

और कुर्सिया और टेबल बहोत सारे रख रखे हुए हैं और बड़ा सा फंक्शन यहाँ लग रहा है।

ये किसी घर का छत लग रहा है जहाँ पर झाड़ भी दिख रहा है और बाज़ू में बड़ी सी बिल्डिंग भी दिख रही है जो शायद ऐ न ऐ न बन रही है।

और छत के ऊपर टेल्स दिख रहे हैं एं जो आज़ू-बाज़ू मंत्री जल से छत्ते भी दिखा रहे हैं जो गुलदस्ते रखे हुए हैं इसके अंदर--

ये किसे का खेत दिख रहा है जहाँ पर मटी भी दिख रही है और आजु बाजु--

फिर पार्ट यहाँ पार्टिशन का घर दिख रहा है जहाँ पर बहोत सारे बाइक्स लगे हुए हैं और सामने--

ये भी मुझे चश्मे की दुकान लग रही है जहाँ पर बहोत सारे चश्मे दिख रहे हैं और ओ कुछ कैसेटें मिल मिल रही हैं यहाँ पर फिल्मों की--

लगता है यहाँ पर किसी का फंक्शन चल रहा है जो डेकोरेशन चल रहे हैं यहाँ पर बहोत सारे सजावट कि गई है पर्दे लगाए गए हैं।

ये कोई बुक्स की शोरूम लग रहा हैं जहाँ पर बहोत सारे बुक्स दिख रहे हैं छोटे पतले मोटे बहोत सारे दिख रहे हैं किताबन दिख रहे है जो काफी बहोत लग रहे है।

और इस फ विंडो इस प्लेटफार्म पर बउत अच्छा दिख रहा हैं जो अच्छा बड़ा दिख रहा हैं।

खाने के लिए और गोल ल लवे का टेबल दिख रहा है।

जमाके जमाके कर रहे हैं पत्थर के आस पास घाँस उगी हुई हैं।

आज़ू-बाज़ू भी कुछ छोटे-मोटे ए ए मोटे पतर दिख रहे है और एक लेडीज़ जा रही है यहाँ से--

पीच्छे दो बच्चे उसको पक पकड़ कर ठहरे हुए हैं पीछे बहोत सारे बच्चे बेठे हुए हैं।

और आज़ू-बाज़ू झाड़ा में दिख रहे हैं और निच्चे पानी भी दिख रहा है।

ये एक छोटी सी दुकान दिख रहा है जहां पर तेल मिलता हैं जैसे पेट्रोल का मीठा तेल और बहोत कुछ हो जैसे मशीन में--

एक मंदिर कोई पुरानी दिख रही है और आज़ू-बाज़ू जाड़ा दिख रहा है।

इस मंदिर के सामने कोई एक औरत बेठी हुई दिख रही ए ।

ये किसी पूजा का वहतवा दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर ल लेडीज़ आकर बैठे हुए हैं और शायद पूजा कर रहे हैं।

एक मंदिर लग रही है बड़ी सी बहोत सारे लोग यहाँ पर बाहर आकर ठहर गए हैं अं और इसमें जेन्स भी और लेडिज़ भी दोनों दिख रहे--

ये पिच्छे बड़ी सी टाइपी दिख रहे हैं पानी की और उस पे बड़ा सा नेटवर्क सा खम्बा भी दिख रहा है और सामने को घर भी दिख रह--।

जो इसके सामने कोई नही है गाड़ी बस सायद दिख रहे है।

एक जेंट्स कपड़े मिलने का शो दिख रहा है यहां पर बहोत सारे लोग आ रहे हैं एक बच्चा एक्टिवा पर आया हुआ है कपड़ा लेने।

यह एक होस्पिटल लग रहां है जहाँ यह छोटा सा होस्पिटल लग रहां है बाजू में पेसंस लाने के लिए--

ट्रक दिख रहा है और सुरेम दिख रहे है छोटे से और भी कुछ--

और ऊपर बहुत सारे फेन चाल रहे है और लाइटिंग भी चालु है।

इस जगह चश्मे का शोरुम लग रहां है जहाँ पर बहोत अच्छे चश्मे दिख रहे है और अंदर विंडोस में रखे हुए है।

पडा दिख रहे है और काफी पुराना घर लग रहा--

स्टेज पर छोटे तिन बच्चे ठेहरे हुए है और बहोत सारे लोग आकर बेठे बेठे हुए यहाँ पर--

बाजु में पर्दे छोड़े गय और आजू बाजू झाडा भी दिख रहे है।

एक लकड़ी काटने कि मशीन लग रही है जो बहोत सारे मशीनों दिख रहे और यह मशीन रखने कांटने कि लग रही है और बहोत सारे लक--

एक खिले कि में नारा दिख रहे है जो जो गोल रौन्डिंग दिख रहे है।

यह बड़ी सी फेक्ट्री लग रही है जहाँ पर तिन बड़े टाकिया दिख रहे है और बाजू में--

जिओ पेट्रोल पम्म लग रहा है जहाँ पर गाड़ी आ रही है रेड कलर कि और डोर दिख रहा है और सामने पीछे लग रहे है और आजू बाजू--

यह किसी मेच का बड़ा सा मैदान दिख रहा है जो नाईट का टाइम है और लाइटिंग भी चालु है।

दो मैदान दिख रहे है एक ला रेड कलर का और एक घास कलर का दिख रहा है मुझे यहाँ मैदान में कोई नही दिख रहा है सिर्फ लाइटिंग चालू है और बहुत बहोत सारा रात का रात का टाइम लग रहा है।

एक विंडो भी रखे हुए दिख रहा है--

कलर मारा गया है विंडो को ऊपर ए_सी भी दिख रहा है छोटा सा।

बाजू में पिसने के कुछ चकियाँ दिख रहे है कुछ डब्बे भी दिख रहे है और--

किते आट आट दिख रहे गुलदस्ते बहोत सारे दिख रहे है और यह छोटे से पोधे है अभी तो बहुत सारे दिख रहे है।

और खम्बा भी दिख रहा है और खम्बे के बाजू में और कुछ सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर से लोग जा रहे हो यहांपर सब लोग आ रहे है और सामने--

ये एक क्लासरूम दिख रहा है जहां पर बेंचेस रखे हुए हैं और दो बोर्ड भी दिख रहे हैं।

मुझे वो पार्किंग एरिया दिख रहा है जहाँ पर ला कर पार्क करते है बाजू में शोरूम दिख रहा है।

अच्छा ख़ासा दिख रहा है और बाजू में एक डोर भी दिख रहा है जो अच्छा रंग का दिख रहा है।